इस फ़ोटो में एक सीमेन्ट की रोड दिखाई दे रही है जिस पर पीले रंग के छोटे-छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हें ।--

इधर साइड पर एक मोर बना हुआ है जो नीले रंग का है और जिसके पंख अभी बंद हैं।

इस फोटो में पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के चारों तरफ बुशेस लगी हुई हैं मंदिर के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बुशेस के आगे एक आदमी खड़ा है जिसने हल्की गुलाबी रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

इसमें एक आदमी जीम में अपनी सेल्फी लेते दिखाई दे रहा है। पूरी जीम के इंटीरियर येलो ब्लैक और रेड में है।

एक लड़का झोला लेजाते दिखाई पड़ रहा है और एक आदमी पिंक कलर की शर्ट में जाता दि --

साइड में डी.जे. भी लगा हुआ है। नीचे मिट्टी और घास फुस नजर आ रही --

स्टेज पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। बीच मैं एक सैंटा क्लोज भी खड़ा हुआ है। पीछे नीले रंग के पर्दे लगे हैं। आगे एक पोडियम पर माइक लेकर एक आदमी कुछ बोल रहा है। बहोत सारे बलून से सजावट की गयी हैं।

पीछे बहुत सारे फल डलियों में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे कुछ औरतें झुण्ड में बैठी भी हैं उससे पीछे बहुत से आदमी खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे दीवार पर हरे ऑरेंज और सफ़ेद कलर का बैलून का बंच लगा हुआ है।

इस फोटो मे पांच आदमी नज़र आ रहे है एक आदमी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है जिसपे लिखा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एनरोलेड जो आदमी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है उसने लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है।